और यहां पे बहुत ही अच्छे लगता अंदर में पुले टाइप का यहां पे पाइप भी बिछाया गया है जो कि बहुत ही अच्छे काफी सुन्दर है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे है यहां पे नीचे में गिट्टी भी है।

और यहां पे बहुत ही अच्छे से इस दुकान में लाइट लगाए गए है लरी लटकाये गए है जो की देखने में बहुत अच्छी चमकीले टाइप का लगता है और अंदर में बहुत-सारे कपड़े हैं।

यहां पे आप देख सकते हैं जो गुफा टाइप का है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसके साइड में बहुत पेड़-पौधे लगे हुए हैं और हरे-भरे भी हैं देखने में काफी सुंदर लगते हैं।

यहां पे पेड़ लगे हुए सुखे बहुत ही अच्छे--